यह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अह पुष्प हैं।

ये पिंक मंदिर है आसमानी मंदिर है रेड उसमें कलर है आगे दुर्गा मां है।